इस पिक्चर में हमे पहले तो दुकान के अंदर के फोटो दिखाया गया है।

इस दुकान के अंदर हमे बहुत सारे सामने दिखाई मिल रहे है।

फिर दूसरी और हमें बहुत सारे पल्ले पल्ले कांच दिखाई देने मिल रहे हैं जो की एक जगह पर बहुत सारी रखे हुए हैं।

इनके सर पर कलाई की मदद से गिट्टी उठाते हुए देखने मिल रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक लड़का दिखाया गया है जो की कुछ योगा टाइप में कुछ कर रहे है।

पिक्चर में हमें एक बिल्डिंग दिखाया गया है और इस बिल्डिंग के बैनर पर हमें स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया दिखाया गया है।

इस पिक्चर हमें पहले तो बहुत बड़े नदी दिखाई देने को मिल रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक सुंदर सा होटल दिखाया गया गया है जो कि बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया गया है।

इलेक्ट्रिक वायर्स भी साइड पर दिखाई देने मिल रहे है।